यहां आगे पर एक कुर्सी रखी हुई है और आगे एक शीशा लगा हुआ है।

अंदर की तरफ एक शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है और थोड़ा आगे नन्दिजि का मंदिर बना हुआ है।

बगल में हमें कपड़े की दुकान दिखा रही है जहां पे कपड़े रखे हुए हैं।

नीचे शीशे पड़े हुए हैं और आगे की तरफ घर के अंदर सीढ़ी गई हुई है।

और पीछे की तरफ बहुत बड़ा पत्थर का दीवाल दिखाई दे रहा है।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

जहां पे बहोत सारी लाइटें लगी हुई है और बाहर की तरफ बहोत सारी बाइक खड़े हुए हैं।

और छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं बाहर की तरफ भी दो लोग खड़े हुए और नीचे कुर्सियां लगी हुई है।

इस तस्वीर में हमें भारत ढाबा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

और आगे की तरफ गेंदें का फूल लगा हुआ है।

नीचे फर्श बना हुआ है पीछे की तरफ दीवाल येलो कलर की दिख रही है।

जहां बाहर की तरफ दीवार में मीटर लगा हुआ और तारे गए हुए हैं।

नीचे फर्श बना हुआ है और ऊपर बहोत सारी लाइटें लगी है।

और पीछे हमें पेड़ दिखाई दे रहा है एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें पत्थर के नीचे का दृश्य दिखाया गया है।